जहां पर बहोत सारी कंपटीशन की किताबें रखी हुई नजर आ रही है।

कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि टेबल पे कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे फूल गोभी रखी है हरी मिर्च रखी है मटर रखे है हरे और लाल कलर के टमाटर भी रखे हैं।

यहां दो तीन गाय भैंसे भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पे एक मैक्स और जुडियो का शोरूम भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे ये एक बर्ड किंगडम दुकान दिखाई दे रही है।

मॉल के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है।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

गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे ओन्ली फॉर फैमिली के अ कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बुक रखी हुई दिखाई दे रही है।